इसमें कई तरह की फर्नीचर दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर ईंट जैसी दिखने वाली टाइलें लगी हुई है।

शोरूम में एक व्यक्ति बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

फोटो के केंद्र में एक सफेद घोड़े की जोड़ी को एक गाड़ी खींचते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग मंच पर बैठे हैं और सामूरह में भाग ले रहे हैं।

दुकान के ऊपर बड़े नीले रंग का डोमिनोज का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

लाल रंग में डोमिनोज लोगो बना हुआ है।

कंप्यूटर टेबल के सामने एक लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है।

बाईं ओर एक व्यक्ति बाइक के पास खड़ा है।

मंदिर के सामने एक घोड़ा भी खड़ा हुआ है।

दुकान की दीवारें हैं और सेल्फ सोने के रंग में है ।

दुकान के अंदर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये नल शायद बाथरूम या किचन में इस्तेमाल होने वाली है।

पर कई तरह के दर्पण लगे हुए हैं।

दीवार पर एक अलमारी भी है जिसमे किताब और अन्य सामान रखें हुए हैं।

पीछे पहाड़ियां और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

अलग अलग रंग और आकारों के कई मकान और अपार्टमेंट दिखाई दे रही है ।

इस फोटो में एक खुला मैदान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सुबह का नजारा का दिखाई दे रहा है।

दुकान की दीवारो पर उत्पादों पर हायर बोर्ड का नाम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक होटल दिखाई दे रहे हैं।

होटल का नाम होटल बैजनाथ है।

दुकान के अंदर कई सारी सामने लटकी हुई हैं।

दीवार पर कृत्रिम पौधे लगे हुए हैं।

दीवारें लकड़ी के पैनल से बनी हुई है।

कुर्सियां लाल रंग की है और टेबल लकड़ी की है।

इसमें हॉलमार्क और रत्न विक्रय की जानकारी भी दी गई है।

इमारत के ऊपर लाल रंग की छते और चारों ओर पेड़ पौधे हैं।

इमारत के सामने एक सड़क और कुछ कारें खड़ी हुई है और एक रेड कारें भी खड़ी है।